व्यक्ति खड़ा हुआ है यहां पर बड़ा सा पहाड़ भी नज़र आ रहा है जिस पर हरे भरे पेड़ पौधे लगे है।

यहां पर नीचे बैठने की कुर्सी भी दिखाई दे रही है कुछ और लोग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर फूल लगे हुए हैं।

बड़ी बड़ी दीवारें भी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर बड़े से दो गेट दिखाई दे रहे हैं यहां पर गेट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं यहां पर बस भी नजर आ रही है।

कमर बंद पहने हुए दिखाई दे रही है हाथों में चूड़ियां भी पहने हुए हैं गजरा भी लगाया हुआ है इनके पीछे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर एक दीवार है जिसके गेट लगा हुआ है गेट खुला हुआ है यहां पर --

इस इमेज में बीच में एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर सीढ़ियां भी नज़र आ रही है एक छोटा --

कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं यहां पर गमलों में पेड़ है।

नजर आ रा है यहां पर एक डिब्बा भी दिखाई दे रा है बाहर चप्पल खुली हुई है अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

इस इमेज में सड़क पर बहुत सी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ लोग बाइक पर बैठकर जा रहे हैं में --

ऑटो व कार भी नजर आ रही ऑटो में कुछ लोग बैठे है ऑटो के पास ही कुछ लोग --

यहां पर अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं बहार भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है एक व्यक्ति मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर लाइट भी जली हुई है दिवाल पर बड़ी सी सुंदर सी पेंटिंग भी दिखाई दे रही यहाँ पर एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में एक घर दिखाई दे रहा है यहां पर बाहर कुर्सी भी नजर आ रही है।

गुलाबी बैंगनी और पीले रंग की मालाएं दिखाई दे पास ही में एक स्टूल भी दिखाई दे रहे कुछ व्यक्ति भी यहां पर --